नहीं दीवार में बहोत सारे घोड़े वाले चित्र नजर आ रहे है।

ब्लैक कलर का टीशर्ट पहने हुए हैं उसी के पास एक चेयर नजर आ रहा है।

और इस रूम का रंग सफेद नजर आ रहा है।

दूरी में बहुत बरे बरे बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

वहां एक साइड में ट्राली नजर आ रहे हैं।

औरस पीछे कुछ लिखा हुआ है साफ ।

दूर एक पेड़ नजर आ रहा है।

पास में एक बाइक है। एक सब्जी की दुकान है।